हमारे को इस चित्र मे एक अ कुछ अच्छे कुछ डिजाइन से बना हुआ दिख रहा है जिसके बहार हरे-हरे पेड़ हैं जिसके किना आगे से झंडे लगे हैं कुछ चित्र बना रखें हैं अच्छे-अच्छे चित्र बना रखें है ऊपर बोहो-बोहोत सुहाना दिख रहा है।

और हरे-हरे पेड़ हैं बहार से झंडे लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर सजा --

आगे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और अच्छे-अच्छे पहाड़ हैं इधर एक एक आदमी दिखाई दे रहा है आगे बोहोत अच्छा सा पहाड़ है बादल है बहुत बढ़िया सुहाना आसमान दिख रहा है हरे-हरे पेड़ हैं अच्छे से।

रेड कलर में जे. सी. बी. खड़ी है हल्की-हल्की रेड कलर टाइप की है और इस बिल्डिंग में ये बिल्डिंग बहुत बड़ी-बड़ी।

उस एक आदमी को रखा है मछलियों को पड़कर रहा है।

पीछे कुछ कपड़े भी लटका के दिख रखें हैं ऊपर कुछ लाइट --